व वाश बेसिन दिख रहा है।

ये रहमत भाई का गैरेज है रहमत मारुति वर्कशॉप ।

आनंद धारा डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ तिरंगा फरहाने का कार्यक्रम चल रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं एक आदमी झंडे को तैयार कर रहे हैं।

बहुत सारे आदमी मास्क लगा के खड़े हैं और तिरंगा दिख रहा है ऊपर का बिल्डिंगे दिख रहीं हैं बोर्ड है आधा-आधा का --

एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन कर-कलर्स का मेट बिछा हुआ है बहुत अच्छी है एकदम तस्वीर गुड ।